पत्ते हैं छोटे छोटे घासे वगेरह है पीछे में एक पेड़ है साइड से आसमान दिख रहा है।

ऊपर में नीला आसमान दिख रहा | साइड में पेड़ वगैरा दिख रही हैं बादले वगैरा दिख रही हैं ।